सड़क है। यह सड़क काफी बड़ा है। इस सड़क पर बहुत सी गाड़ी आती-जाती है। यहाँ पर बहुत से साइकिल रिक्शा भी आती-जाती है। यहाँ पर काफी आदमी भी आते-जाते है।

इस नदी के पानी से सिंचाई भी किया जाता है इस नदी के किनारे पर एक मैदान है इस मैदान में बड़े-बड़े पत्थर --

यहाँ पर टीचर ट्शयुन पढ़ा रहें हैं।

यह मैदान में पटवान किया जाता है यहाँ पर पानी दिए जाते है इस मैदान में एक मुर्गी है।

मस्जिद है यह मस्जिद काफी बड़ा है इस मस्जिद में ए.सी. भी लगाया गया है इस मस्जिद में बहुत सारे मुस्लमान भाई आते हैं ।

यहाँ पर बहुत से लेबर मिस्त्री कम कर --

याहा पर पशु-पक्षी भी होंगे इस पहाड़ से एक झरना बहती है ।

दोनों हाथ में जूता पहने है दोनों पैर में भी एक हाथ जमीन पर रखे है एक हाथ ऊपर --